कुछ बच्चे प्रेक्टिकल करते दिख रहे हैं।

बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

मुझे यहां कुछ बच्चे दिखाई दे रहे है।

मुझे यहां डॉक्टर शेफाली गुप्ता लिखा हुआ--

पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां कुछ बाइक दिखाई दे रही है।

दुकान दिखाई दे रही है।

बैंक दिखाई दे रहा हैं।

मुझे यहां कुछ लाइट्स दिखाई दे रही--

तेल दिखाई दे रहा है।

कुछ वाहन दिखाई दे रहे हैं।